छत बनी हुई हैं आसमान दिखाई दे रहा हैं।

यह एक स्कूल लग रहा है जिसकी वॉल रेड --

और पैरोट कलर की है सामने टायर्स लगे हुए हैं जो--

येह एक पेट्रोल पंप --

रखे गए हैं बहोत बॉक्स --

टोल प्लाजा है जहां गाड़ियां निकल रही हैं।

हरल पत्ते लगे हुएं हैं अ--

यह एक कंप्यूटर सेंटर है कंप्यूटर रखे हुए हैं।

एक जगह से ले जाया जा रहा है।

सामने से आ रही है पीछे ट्रक नजर आ रहा है।